इस फोटो में एक नहर को दिखाया गया है।

और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

बोर्ड भी व्हाईट कलर का है।

जिमर बॉय के पीछे एक कुर्सी है।

उसके पीछे लाल कलर और पीले कलर का दीवाल है।

टेबल भी है टेबल भी सफेद कलर का है।

येलो और वाइट कलर का है।

सामने पल्स रखा गया है और किंडर जॉय ।

उसके साइड में एक गिलास है।

जिस गैरेज का नाम आनंद ऑटो रिपेयर है।

इस फोटो में एक गार्डन को दिखाया गया है।

इस फोटो में दिखाया गया है एक रेस्टोरेंट को--

यहां पे बहुत सारे पेन पेंसिल और इरेज़र सॉफ्टवेयर भी है।

इस फोटो में एक घर है।

ये ग्रिल लगा हुआ है।

बेड के पीछे एक खिड़की है जो कि ब्राउन कलर का है।